कुछ बच्चे फील्ड में खेल रहे है सभी एक दूसरे के साथ खड़े है पीछे एक बड़ा सा अपार्टमेंट दिखाई दे रहा है।

यह एक वाटर पार्क का दृश्य है जहाँ पे बोहोत सारे पानिया और छोटे छोटे पूल बनाये गये है।

सामने एक उंब्रेल्ला आकर का रखा हुआ हैं जो कि पीले कलर का दिखाई दे रहा हैं बीच में कुछ बच्चे खड़े हैं।

यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भीड़ दिखाई दे रहा है कुछ लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हुए है सभी ने उजले कलर का ड्रेस पहना हुआ है किनारे पर --

प्याज व फल रखी हुई है यहा पे एक तराजू भी रखा हुआ है जिसके ऊपर एक मिर्च रखा है सामने एक बोरे बोरी दिखाई दे रही है और कुछ लाल लाल टोमेटो भी दिखाई दे रहे है।

यह एक मिठाई का दुकान है जहाँ पे बहुत सारी मिठाई एक लाइन में रखी हुई है सामने एक बड़ा सा फ्रिज रखा हुआ है जिसपे कोको कोला लिखा हुआ है अंदर एक महिला खड़ी है जिसने मास्क लगाया हुआ है।

एक ने लाल कलर का ड्रेस पहेना हुआ है दूसरे ने पीले कलर का ड्रेस पहेना हुआ है बीच मे लोहे के आकार का एक पिंजरा बनाया है।

यह एक रेलगाड़ी का द्रृश्य है उसमे ब्लू कलर का डब्बा लगा हुआ है सामने इंडियन रेलवे लिखा हुआ है।